पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे हैं।

दो कार नजर आ रहे हैं ।

दो लड़के खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

दोनों के पीछे पहाड़ और--

यह दृश्य ट्रेन से बाहर देखने की है।

सभी बच्चों ने सफेद यूनिफॉर्म पहनी हैं।

यहां पर फसल लगी है।

इसके आगे एक आदमी कुर्सी पे बैठा है।